और दीवारों पर कुछ डिजाइन करे हुए हैं।

और नीचे लाल कलर की मैट बिछी हुई है।

और लाइटें भी हैं और चा ऊपर लोहे की चादरे भी है।

इस तस्वीर में बहुत सारे खंबे है।